एक मंदिर बना हुआ है मंदिर में काफी सारी सीढ़ियां हैं।

मंदिर के पास और दो मंदिर बने हुए हैं पूरे में ही झंडे ही झंडे लगा रहे --

यह एक एयरपोर्ट है एयरपोर्ट पर सभी व्यक्ति एरोप्लेन की और जा रहे हैं एक ए ए ए एरोप्लेन खड़ा हुआ है।

एक नदी बह कर जा रही है नदी के किनारे सीढ़ियां बनी हुई है सीढ़ियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

खिड़कियां है एक स्टुल रखा हुआ है जिस पर दीपक रखा हुआ है दो दान पात्र रखे हुए--

यह एक लाइब्रेरी है जिसमें खामोश जोन लिखा हुआ है यहाँ पे सभी बच्चे चुपचाप पढ़ते हैं लाइब्रेरी में पंखे लगे हुए हैं सभी की अपनी-अपनी --

नदी निकल कर जा रही है| नदी किनारे काफी हरे- भरे पेड़-पौधे लग रहे हैं| एक--

एक काफी बड़ा मंदिर है मंदिर में काफी बड़ा ग्राउन्ड है यहाँ चारों तरफ पेड़-पौधे ही पेड़-पौधे लगे हुए है धर्मशाला भी बनी हुई--